रखा हुआ है और एक बोर्ड पे झंडे भी बने हुए हैं।

एक आदमी चढ़ने की भी कोशिश कर रहा है बस की छत पर एक लेडीज --